जहाँ एक औरत खड़ी है।

एक कमरा है।

जहां बच्चे पढ़ रहे हैं।

जहां गुब्बारों से सजावट हुई है।

जहां बोर्ड लगा हुआ है।